जैसा कि मैं देख पाया हूं मुझे कुछ दवाई के डिब्बे भी दिखाई दे रहे हैं कुछ जूस भी दिखाई दे रहा है।

जैसे कि मैं देख पाया हूं मुझे एक बड़ा समुद्र दिखाई दे रहा है समुद्र के साइड मुझे कुछ रेत भी दिखाई दे रही है।

मुझे साइड में एक ब्लैक कलर की कटोरी है जिसमें रबड़ी है या स्पून भी है मुझे एक स्पून अलग से दिखाई दे रही है और एक ब्लैक कलर की प्लेट भी रखी हुई दिखाई दे रही है --

जैसा की मैं देख पा रहा हूँ मुझे पानी जैसा एक दलदल दिखाई दे रहा है जिसमें काफी सारे छोटे छोटे पौधे लगे हुए है उधर कुछ घासे भी दिखाई दे रही है मुझे --

मुझे एक गीली मिट्टी जैसा अनुभव हो रहा है जैसे कीचड़ हो मुझे काफी सारे घास पे लंबे लंबे पौधे दिखाई दे रहे हैं मुझे एक ब --

में इमारत भी नजर आ रही है जो की वांट टिकी हुई है मुझे एक बेंच भी नजर आ रही है और मुझे सामने में साइकिल व बाइक्स भी नजर आ रही हैं ।

मुझे कुछ लोग भी नज़र आ रहे है मुझे कुछ लोग बैठे हुए भी नज़र आ रहे है और कुछ टोपी भी नज़र आ रही है मुझे रोई की रेलिंग --

जैसा कि मैं देखता हूं मुझे सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिसमें एक लोहे का गेट लगा हुआ है ऊपर की तरफ एक गुलाबी से है पर काफी सारे रोशनदान नजर आ रहे हैं।

जैसा की मैं देख पाया हूँ मुझे एक शादी का मंडप दिखाई दे रहा है जो की पीले कलर का सजाया हुआ है मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे है जिसने पीले कलर के वस्त्र पहने हुए है ।

त सामने पीले कलर का पीलर भी दिखाई दे रहा है मुझे एक लाइट भी दिखाई दे रही है बैठने का स्थान भी दिखाई दे रहा है व एक झूला भी दिखाई दे रहा है व साइड में --

मुझे सामने की दिवार पर काफी डेकोरेटेड नज़र आ रही है मुझे कुछ साइकल्स भी नज़र आ रही है जैसा की मैं देख पाया हूँ ।

जैसा कि मैं देख पाया हूं मुझे काफ़ी सारी कार नज़र आ रही है एक कार की डिक्की खुली हुई है मुझे आगे का बोनट हटा हुआ है मुझे उसका --

पहिया निकला हुआ है मुझे सामने त्रिपाल भी नज़र आ रहा है जो कि हरे कलर का है मुझे लोहे के बम्बू भी नज़र आ रहे है।

मुझे इसके साइड में काफी सारी रेत नजर आ रही मिट्टी के टीले नजर आ रहे हैं मुझे सामने काफी सारे खेत नजर आ रहे--

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मुझे सामने पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं मैं कुछ ऊपर गुंबत टाइप में नजर आ रहा है जैसे कि मैं देख पाया हूं मुझे नीचे सत्तर में मिट्टी भी नजर आ रही है।

जैसे कि मैं देख पाया हूं मुझे सामने एक विद्या इंस्टिट्यूट का बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर एंटी गेट का बोर्ड लगा हुआ है।

व लाइटें न नजर आ रही है वही गेट नंबर टू का कोड भी नजर आ रहा है।

में कुछ जगह कीचड़ भी दिखाई दे रहा है मुझे इसमें काफी सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे कुछ कार्टून्स पैक हुए भी लॉन में दिखाई दे रहे है जैसा की मैं देख पाया हूँ मुझे कुछ बॉल दिखाई दे रही है और कुछ --

मुझे सी_सी_टी_वी कैमरा दिखाई दे रहा है मुझे रैक दिखाई दे रही है और कुछ पॉलि--

मुझे एक बाइक भी दिखाई दे रही है जैसा की में देख पाया हूँ सामने की बिलडिंग ऑरेंज कलर की --

मुझे साइड में एक टेंट भी दिखाई दे रहा है मुझे सामने की बिल्डिंग दिखाई दे रही है वह भी वाइट है मुझे कुछ गमले भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं --

दिखाई दे रहा मुझे कुछ के पोस्टर दिखाई दे रहे एक पंखा दिखाई दे रहा है।

चार वाले नंबर भी दिखाई दे रहे हैं मुझे सामने भी एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

मुझे एक हथोड़ा भी नज़र आ रहा है मुझे एक मशीन भी नज़र आ रही है जो की लकड़ी भी काटने वाली है मुझे --

जैसा की मैं देख पाया मुझे सामने एक रोशनदान भी नज़र आ रहा है एक खुला हुआ केबाड़ भी नज़र आ रहा है मुझे एक बाल्टी भी नज़र आ --